उनरेह के नीचे दो डस्टबिन पड़े हैं एक में येलो पॉलीथिन चढ़ा है और एक में रेड ।

और द सिटी कैफे लिखा हुए है ऊपर बोर्ड दे और इन्होंने रंग बिरंगे कपड़े जो पहने हुए हैं।

और इन्होंने जो गोल घेरा अपना बनाया हैं और सिर जो है नीचे गए हुएं हैं।

और सामने दो बोर्ड लगे हुए हैं।

हाथ में इसने बैट पकड़ा हुआ है।

और इनके पीछे भी जो दो बेड़िया नजर आ रही है।

एक ट्रेन नजर आ रही है।

सामने एक खंभा नजर आ रहा है।

और इसने काफी सारे पेंस जो अपने आगे रखे हुए हैं।

ये एक शॉप है जहां पे काफी सोच जो समान है टी_वी सिलेंडर वगैरह जो पड़े हुए हैं।

अह इसमें जो हैं ऊपर तीन केक पड़े हैं काउंटर पे।

और इसमें कुछ जो बंगले हुए बंगले हैं--

और शायद कुछ लोग जहां काम करते भी नजर आ रहे--

उसमें रेड कलर और पीले कलर का जो है बहोत सोनार नजर आ रहा है।

और इसमें है जो सामने बड़ा मिरर लगा हुआ है।

और एक इसके फ्रंट पे गेट लगा हुआ है।

और एक जो बड़ा सा सतार भी नज़र आ रहा--

जे काफी सारे जो पौधे और फ्लावर्स लगे हुए है।

अ जहा थो दो चार पोल भी लगे हुए हैं रेड कल--

बड़े बड़े पौधे नजर आ रहे हैं।

आगे से एक अह रस्ता नजर आ रहा है।

और आगे से एक मोटरसाइकिल पे आदमी जा रहा है।

ये एक सामने घर बना हुआ है।

एक ब्लू कलर का जो बोर्ड लगा हुआ है।

और गाड़ी के आगे ही एक गमला पड़ा है।

और काफी जो पीले रंग के फूल लगे हुएं है इसको।

और सामने काफी सारे जो पौधे भी नजर आ रहे हैं।